ये तस्वीर देख रहे हैं ये एस एल जे डिग्री कॉलेज है।

जिसका के हरा कलर है और ब्लैक कलर का इसका गेट है।

तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि --

आप तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि यहां पर --

गुड़ु वारिस --

इंग्लिश में कपल्स बोलते हैं।

और इनकी जो जोड़ी बहुत ज्यादा बेस्ट है मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है।

यहां पर एक गैरेज है जो कि बहुत बड़ा है।

ये दोनों जो हैं एक मालिक की हैं। जिसमे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही है एक ही घर मे है।

तस्वीर देखते हैं ये तस्वीर एक स्टेट बैंक --

जैसे की अजान की आवाज पुरे गांव को सुनाई दे।

जो कि अपनी सुबह सुबह की रेस पूरी कर रहे हैं जिसको कि --

बोलते हैं कि एक बड़ी-बड़ी जैसे --

एक बड़ा सा मालिक खड़ा है।